साथ में लाल रंग की सीढ़ियाँ ऊपर को जाते हुए हैं।

साथ में एक व्यक्ति दीवार उठाने का काम कर रहा हैं।

यह एक शोरूम की पिक्चर है शोरूम में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है शोरूम के अंदर --

बनाई गई हैं पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।

बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं पेट्रोल पंप के पास में ही कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाई दे रहे हैं।

ट्रक पर लाद रहे हैं यहाँ पर तीन व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति--

रोड के आसपास बहुत ही पेड़-पौधे हैं और दूरी पर--

यह एक कंस्ट्रक्शन साइड की पिक्चर हैं यहाँ पे बहुत सारे मजदूर--

ये एक सिलाई वाले की दुकान हैं सिलाई वाले की--

यह एक बुक शॉप हैं बुक में किताबों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया हैं ताकि कोई भी किताब ढूंढने में--

टेबल पर एक लैपटॉप भी रखा हुआ हैं।

एक पतीले में सब्जी रखी हुई हैं एक टेबल पर एक प्लेट में सैलेड रखा हुआ हैं।

साथ में टिश्यू पेपर हैं पानी की बोतल हैं और एक प्लेट में स्पून रखे गए हैं सर्विंग के लिए--

येल्लो कलर हैं घर की पार्किंग में एक कार पार्क की हुई हैं जो सफेद रंग की हैं।

और इस रेस्टोरेंट की थीम रेड कलर की हैं क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की चेयर --

शेल्फ पे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स जूस लाइक फ्रूटी एप्पी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़े हुए हैं।

लकड़ी का काम करने वाले यहाँ पर तीन कारीगर भी बैठे हुए हैं और उनके पास बहुत सारे औजार भी हैं काम करने के--

यह एक बहुत ही सुंदर घर की पिक्चर हैं घर के बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ हैं।

जहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग की गई हैं साइड की पखडंडियों की--

यह एक बाथरूम एक्सरेज की शॉप हैं।

यह एक जनरल स्टोर की पिक्चर हैं यहाँ पे खाने-पीने का बहुत सारा सामान उपलब्ध हैं जैसे चिप्स नमकीन--

जमीन पर बहुत सारे पत्ते भी बिखरे हुए हैं।

सामने पीछे शेल्फ पर बहुत सारे मेडिसनस भी रखे हुए हैं।

जहाँ पर कार उपलब्ध होती हैं बाहर दो मिनी बसेस भी खड़ी हुई हैं।

साथ में छोटे-छोटे ऑफिसेस और बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं।

जैसे खाने में बनाने जाने वाला तेल हैगा यहाँ पर नमक मिर्च मसाले--

दीवारों का रंग सफेद हैं और सामने खिड़की पर पर्दे लटके हुए हैं जो पर्पल कलर के हैं।

यह एक घर की पिक्चर हैं घर का दरवाजा बहुत ही सुंदर हैं।

यह एक ऑफिस की पिक्चर हैं जहाँ पर--

रोड के चारों और पेड़ लगे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर लाइटिंग की डेकोरेशन की गई हैं साथ में लाइट के--

टेंट से डेकोरेशन की गई हैं बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग की गई हैं बहुत ही कलरफुल पर्दे लगाए गए हैं पर्दों का रंग रेड एंड पिंक हैं।

डेकोरेशन की गई है रेस्टोरेंट के अंदर--

यह एक कबाड़ की जगह है जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है।

यहाँ पर लोहे का बहुत सारा कबाड़ पड़ा है सामने--

तीन पुरानी मोटर बाइक्स भी खड़ी हुई हैं।

नदी में एक बहुत बड़ी नाव है जिसमें बहुत सारे--

यह एक कंस्ट्रक्शन की पिक्चर है जहाँ पर--

लोहे के सरियों से एक जाल बिछाया जा रहा है जिसके बाद उस--

मिट्टी की रोड़ी और सीमेंट से लेंटर डाला जाएगा।

और भगवानों की फोटोवें लगी हुई हैं सामने एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यूज की गई है जिसमें स्कूटी लगाई गई है खाने वाली टेबल के आगे सामने एक कूलर भी पड़ा हुआ है बहुत बड़ा --

और सामने दीवारों पर बहुत अच्छी पोस्टर्स भी बने हुए हैं।

यह एक हॉल की पिक्चर है जहाँ पर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।